ऐजा दु तीन आदमी बा। एगो डोल्फिन के एगो ठेला पे सुतावल गईल बाजॉन की---

एक स्कूटी ब्लू कलर की दिख रही है | एक मोटरसाइकिल काला कलर का दिख रहा है।

ऐसा लगता है कि घर के आगे जो खाली जगह बचा है वहाँ पे--

एरिया लग रहा है रास्ता दिख रहा है बगल में दो-चार पेड़ है बगल में हरा-भरा पेड़ है |

ये लोग अपने घर के कमरे में बुद्ध भगवान को रखे हैं |

एईमें चार गो कुर्सी भी दिखता। ऐजा साइड में पेड़ ही पेड़-पौधा बा जौन की बहुत हरा बा दूर पर। एगो तर तीन गो तरकुल के भी पेड़ दिखता।

ऐजा एगो गाड़ी लौकता जौन की ट्रक हटे। ऐमे साइड में ब्लू कलर के बा। बीच में एकर रंग उजला बा। एगो मर्दाना बैठ के लागता गाड़ी के धोवता। एगो बाल्टी रखल बा।

ई जौन गाड़ी ह ऊ जाता भारत पेट्रोल हवे जय पर भारत पेट्रोलियम भी लिखल बा।

ईहा एगो छिपी बा जैमेन की मछली बड़ीसन। एईमेन हारा कलर के मछली बाड़ीसन जौन की ओईजा अगल- बगल लोग भी एकनी सन के रखले बा।